ये एक बहुत बड़ा बुद्ध भगवान जी का मंदिर है जो की देखने में काफी सुंदर दिख रहा है।

ये एक बहोत बड़ा घर है जोकि देखने में काफी सुंदर दिख रहा है।

अं एक काफी प्लांटस है बा पीछे ट्रीज है।

ये एक कोई तो लड़की है जो की मशीन से कुछ बना रही है।